साइड मे थोड़ी सी जिंगा है जगह है गार्डन है सामने दो लोग खड़े हुए है।

और बोरी के ऊपर पटिया रखा हुआ है तीन टंकी है बोरी ले जा रहा है।